बंगाल का एक बहुत ही बड़ा फेस्टीवल है त्योहार है दुर्गा पूजा जिसमें पंडाल बनाया जाता है और मां दुर्गा की स्थापना किया जाता है ।

ये एक मंदीर है जिसमें हम देख सकते है लिखा हुआ है श्री शिव दुर्गा मंदिर।

नीचे एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि उस मंदिर में घूमने आया हुआ है। मंदिर का कलर सफेद है।

ये भी एक खुला मैदान का जगह है जहाँ पे शायद खेती होती है।

और ये दो मंजिला मकान है शायद यहाँ पे अब कोई नही रहता।